यह एक बहुत अच्छा सुंदर सा इमेज दिखाया गया है।

जो मंदिर दिखने में काफी सुंदर और अच्छा है इन मंदिर में लोग दूर-दूर से पूजा करने आते हैं और लोग यह बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है दिखने में --

जहाँ पैसा निकासी करते हैं लोग यहाँ पे बहुत दूर-दूर से लोग निकासी करने के लिए आते हैं ।